पेट्रोल पंप है यह पेट्रोल पंप सड़क के किनारे है ।

के किनारे बड़े-बड़े पेड़ भी है में पानी भी है।

ये एक सामानों से भरा हुआ है यहां पे तरह तरह का समान बिक रहे हैं।

यहां पर बड़े-बड़े बस भी खड़े हैं यहां पर काफी सारे आदमी भी है।